और खिड़कीयां दिख रही हैं वहाँ की और बहुत से लड़के खड़े है यहाँ पर सफेद कलर की ड्रेस पहन कर --

कलम बानौवा दिख रहा है और एक कंकाल टंगा दिख रहा है डी--

और सीढ़िया दिख रही है वाइट कलर की और एक ट्रैन दिख रही हैं सामने की साइड --

और एक व्यक्ति दिख रहा हैं सामने ब्लैक टी शर्ट में और सब जगह से दिख रहा है सामने कुछ बिल्डिंगे दिख रही हैं बड़ी-बड़ी--

सामने एक गार्डन दिख रहा बहुत बड़ा बहुत से पेड़ दिख रहे सामने के साइड एक रोड टाइप दिख रहा सामने--

लाइटे लगी बहुत सारी और लोहे की रेक वगेरा दिख रहे सामने के साइड --

दो लड़का दिख रहा हैं यहाँ पर रेड कलर की शर्ट और येलो कलर की टी शर्ट पहने हुए और आसमान दिख रहा हैं यहाँ पर--

सामने एक रोड दिख रहा है और आसपास गार्डन टाइप उम्म दिख रहा पूरा और येलो बिल्डिंग दिख रही हैं सामने के साइड --

सामने एक रोड दिख रहा है और एक ब्लैक कलर की ऑटो दिख रही हैं उसमे कुछ बैठा कोई बैठा हुआ है और बहोत से लोग दिख रहे हैं सामने के साइड --

सामने एक रोड दिख रहा है और कचड़े में पौधे लगे हुए दिख रहे है और एक बिजली का खम्बा दिख रहा है।

सामने बहुत बड़ा मैदान ग्राउंड दिख रहा है और व्हाइट पट्टी दिख रही है सामने के साइड एक व्यक्ति का हैंड दिख रहा है सामने के साइड --

यहाँ पर एक गेट दिख रहा है ब्लैक कलर का कुछ रेमिशन काम चल रहा है यहाँ पे और कुछ बड़े बिल्डिंग दिख रही है सामने के साइड आसमान दिख रहा है।

और बहुत से लोग दिख रहे है सामने खड़े हुए और बैठे हुए दिख रहे है बहोत से एक गेट दिख रहा है सामने की तरह--